उम् बैठने के लिए एक चेयर लगी दिखाई दे रही है जो काले रंग की है एक ब्राउन रंग की चेयर भी दिख रही है और सामने हमे एक बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है जो नीले रंग का है।